यह एक मॉल है जहां की बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

और एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि वो फोन से बात कर रहा है।

एक लड़का है जोकि बेड पर बैठा हुआ है। वह आसमानी कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

यहां पे बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे व्यक्ति है जो की भीड़ है यहां पे काफी।

नीचे में बहुत सारे लेबर है जो कड़ाई हाथ में लिए हुए है।

और लास्ट में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कुछ कर रहे हैं।

और साइड में कुर्सी भी है वहा पे--

कुछ कर रहे हैं वहां पे साइड में सीढ़ी पे।

यहां पर बैठने वाला दो टेबल लगा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है।

और एक में लिखा हुआ है मैं फेयर लेडिस पार्लर ।

जो की लड़कियों के मेकअप के लिए उपयोग किया जाता है।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति आए हैं जोकि यहां पे बहुत सारे सामान भी है बैग है जुते हैं।

ये दुकान है जहां की मोमोज रोल चाऊमीन सब बनाया जाता है।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं जोकि झंडा फहराने की प्रक्रिया में है सब।

और काफी सारे आदमी यहां पे जा रहे हैं।

और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जोकि टीशर्ट पहना हुआ है।